कहां कभी थी सुंदर लग रहे है आगे एक टैंकर खड़ा हुआ है और व्हाइट कलर के घर पड़े बने हुए है साइड में पेड़ दिख रहे है।

कुछ बगल में कुर्सियों पर बैठे हुए हैं एक कुर्सी पर माइक रखा हुआ है रोड के साइड में गाड़ी खड़ी हुई है साइड - साइड पेड़ है।

आर सोफे रखे हुए हैं टेबल पर गिलास प्लेटे चम्मच रखी हुई हैं।

कुर्सियां लगी हुई हैं और पर्दे भी लगे हुए हैं विंडो पर और लाइट जल रही हैं बहुत ही सुन्दर लग रहा है।